एक एक शादी का मंडप है। ये सजावट भी बहुत अच्छा है। दरवान खड़े हैं।

ये एक बिल्डिंग है अच्छा सा लग रहा है जैसे की आवासीय स्कूल है।

पौधे अगल-बगल में लगे हुए हैं।

जो अपने खाने की व्यवस्था में लगे हुए हैं ।

यहाँ काली ढ़ाबा फॅमिली रेस्टोरेंट है और सजा हुआ है।

और हरा-भरा बगीचा दिख रहा है। एक लड़का --